दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

उसके बगल मे अंदर ऑ रूम के अंदर दो कुर्सी रखा हुआ है।

उसके अंदर दो चेयर कुर्सी लगा हुआ है।

अलमारी बनाया गया है उसमें लाइट जल रहे हैं।

वो स्वराज का लगा हुआ है स्वराज लिखा हुआ है।

चार बैठे हुए हैं उसमें से एक वाइट कलर का है।

कुछ बस्तीयाँ दिखाई दे रही है छोटा छोटा घर--

पत्ते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे जो हरा कलर का है जो डार्क हरा कलर का है।

और बर्तन मांजने वाला स्क्रबर रखा हुआ है।

और कुछ चीजें दिखाई दे रहे हैं जो नीला कलर का है नाव दिखाई दे रहा है दो जो एक नाव नीला कलर का है।

एक कड़ाही में छोला दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे इंटा का टुकड़ा दिखाई दे रहा है।

सामने एक वाइट कलर का बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक मोटर रखे हुए हैं।

एक मेला है जो उसमें सो लगा हुआ है।

जो नाटक दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का है और ऊपर पर्दा हुआ टेंट लगा हुआ है।